ई कोनो फुल माला बत्ती के दुकान बाटे।

ये कोनो खाये के चीज बाटे

कोई इंजीनियर बाटे।

बहुत बड़ा बढ़िया ही डेकोर लगता बड़िया कुर्सी बा

ये भी कोई लागत कोई फेक्टरी बाँटें।

यहाँ लोग ढेर सारा गाड़ी लगल बा और दुकान के बहार बैलून वलून रखल बा।